उम्म माटिला कलर का कलर है।

को देख रहे। फोटोग्राफर भी पेड़- पौधे भी हैं कुछ महिलाये और जैंट्स आए हैं किसी विशेष जानकारी को ग्रहड़ --

बहुत फेमस गेट है ये जो पार्क के अंदर है। यहां भी लोग अपने देश से --

यहाँ दो बाइक है जिसमें से एक पल्सर है और बालू भी पड़ी हुई है। एक व्यक्ति आपस में है। एरिया एरिया जो है खुले में है ठीक है।

हॉस्पिटल के अंदर के ओटी का सामान है जो यहां सीजर और --

गार्डन भी है बगल में और पेड़ पौधे भी हैं। सिटी से बाहर भी बनाया गया है। बहुत ही अच्छा है।

घर की अलमारी में कुछ रिवार्ड्स रखे हुए है। कुछ महात्मा लोगों फोटो भी है।

ये किसी दुकान के पास का फोटो है जो कि यहाँ पब्लिक प्लेस भी है।

सुंदर लग रहा है। बगल में पेड़ भी है। पेड़ों के बीच निर्मित है। नीचे का तो नाइट का समय है तो कुछ खास दिखाई भी नही दे रहा है।

और कलर जो है सफ़ेद और नारंगी कलर का है।

तंबू भी है बनाया गया है। लाइटिंग की व्यवस्था गयी है। पर्दे जो है रेड कलर के हैं। लाइट है। ग्राउंड बहोत बड़ा है। इसमें काफी संख्या में लोग आ सकते हैं। कुछ लोग चल के बैठे --

पीछे बाउंडरीस दिखाई दे रही है। कुछ नीला कलर है बोर्ड का। घर का ब्राउन कलर है।